काफी सारे डम्बल रखे हुए हैं अलग-अलग वैटिंग साइज़ के।

धर्म के हुए है। नीचे पूजा का समान रखा हुआ है।

छत डाला हुआ है। जिस पर के लाइटे लगी हुई हैं नीचे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

पेड़ कि रोड के उधर--

गुफा के बाहर का हिस्सा है। गुफा के अंदर जाने के लिए --

जिसके नीचे कुछ आकृति बनी हुई है।

इसमें बोहोत सारे टेबल दिख रहे है बोहोत सारी कुर्सियाँ दिख रही हैं।

अनाज को सम्हाल कर रखा जा रहा है। एक व्यक्ति अनाज को --

शरीर पर जो शर्ट है उसका कलर चेक्स में है सफेद और --

काफी सारी गाड़ियां पेट्रोल डलवा रही हैं डीजल डलवा रही हैं। दो ट्रक खड़े हुए हैं बड़े-बड़े।

और काँच दिख रहा हे पंखा दिख रहा हे।

नीचे हरे रंग का कारपेट भी लगा हुआ हे।

दोनों तरफ डिजाइन है। एंट्री गेट के नीचे टाइलें लगी हुई हैं।

बिल्डिंग बन रही है। जिसमें काम चालू है अभी। एक समान भी नीचे पड़ा हुआ है। कुछ में भी लगी हुई हैं।

यह एक तालाब कि फोटो है। तालाब में दो व्यक्ति जो है वोटिंग कर रहे हैं।

यह एक दुकान है दुकान के अंदर कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं दुकान के --

ये एक जिम की फोटो हैं।

जिसका कि उद्घाटन किया जा रहा है। जिम के अंदर काफी सारी मशीनें हैं।

के बाद एक बहुत बड़ा घास का मैंदान है घास के मैंदान में भी बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

कांच के बाद नीचे एक फ्लोर हे जिसपर काले और गुलाबी कलर के --

खजूर के पेड़ दिख रहे हैं जो कि हरे-भरे हैं बाकी पेड़ दिख रहे हैं जो कि हरे-भरे हैं।